ये ऑरेंज कलर का पेट्रोल पम्प है और उसपे एकठो शायद ट्रक लगा हुआ है और यहाँ बगल में उसका पंचर बनाने वाला है।

और कॉफ़ी पी रहे हैं और शायद चौमिन खा रहे हैं ।

ये बड़ा मंदिल है|

जैसे हो गया मोबाइल का हो गया टाइल्स का हो गया और कपड़ा के हो गया बहोत सारा मोबाइल का दो अथी म म दुकान है बहोत सारा ।

ये बहुत बड़ा सिएट टायर का दुकान हैं इसमें सारे गाड़ियाँ का टायर मिलता हैं जैसे ट्रेक्टर हो गया स्कूटर हो गया ट्रक हो गया बस हो गया और कार हो गया सारा चीज़ का मिलता है इसमें।

लोग का कपड़ा मिलता है लड़का-लड़की बच्चा छोटे-छोटे बच्चों को भी मिलते हैं कपड़े यहाँ पे और यहाँ पे करोड़ो का मंथली टर्नओवर है यहाँ पे --

और यहाँ पे पहाड़ के बगल में उस साइड मंदिल है बहोत बड़ा शिव जी --

अ यहाँ पे कई बंडल में टी-शर्ट और जीन्स थोक में टांग के --

आ इसमें गेहूँ चावल और मसूरी अ बूट-उट सारा चीज रखाता है इसमें।

इसके सेफ्टी में दो सेक्रेटरी रखे गये हैं।

और किन्तु इस आ दशहरा में लोग प्रसादी खाने आते हैं और देख कर मूर्ति चलें तरह-तरह का खिलौना बिक रहा है और तरह-तरह का मिठाइयाँ बिक रहे हैं और लेखा बच्चे लोग खरीद रहें हैं।